जहां पर काफी सुंदर सुंदर से पेड़ लगे हुए हैं।

और जिम का कलर ब्लैक और भूरा है।

एक विंडो है जो ब्राऊन कलर की है।

कुछ लोग फोन चला रहे हैं कुछ लोग फोन पकड़े हुए हैं।

एक बोर्ड रखा है उसपे कुछ लिखा हुआ है।

सामने एक मेन गेट पर एक आदमी है जो गेट खोले हुए हैं।

इमारत में काफी पिलर है कुछ आगे कुछ पीछे कुछ छोटे पेड़ लगे हैं इमारत के पीछे बहोत सारे मकान बने हैं।

समुंदर के आगे कुछ पेड़ लगे हुए हैं।